आप इस गेट को देख सकते है ये गेट लोहे का गेट है और इसमें कांच की कारीगिरी की गयी है गेट कितना शानदार लग रहा है।

ग्लास भी रखे है लकड़ी का कुछ सामान भी रखा है पिआनो शायद उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी रखे गए है।